उसका चश्मा सामने रखा हुआ है। पर्स सामने रखा हुआ है --

तारीख के रूप में बताया जाता है होता है।

पड़ोस में पेड़-पौधे बहुत ही सुंदर शोभा को प्रदर्शित कर रहे हैं। तस्वीर की रोशनी की वजह से वहाँ पे सुंदर-सुंदर कलर का --

यह एक्सिस बैंक का सामूहिक चित्र दिखाई दे रहा है। यह फ्लेक्सी बोर्ड पर बना हुआ एक्सिस बैंक का बोर्ड है तथा उसके नीचे बैंक है।

तथा यह फर्स्ट फ्लोर पर ना होकर ग्राउंड फ्लोर पर ना होकर फर्स्ट फ्लोर पर दिखाई दे रहा है।

पुरा ह गजल एवं पुराने गीतों की कैसेटे भी दिखाई दे रही है इसकी वजह से दुकान सुंदर प्रतीत हो --

देख सामूहिक चित्रण की एक प्रतिलिपि दिखाई दे रही है। इसमें बहुत सारी मशीने रखी हुई भी दिखाई दे रही हैं।

यह एक एस.बी.आई. बैंक की --

के नीचे एक स्टेट बैंक ए.टी.एम. की एक ब्रांच है जिकी वजह से भारी भीड़ दिख रही है।

यह एक गाय और उसके बछड़े का सामूहिक प्रतिलिपि दिखाई दे रही है। इसमें एक गाय के साथ एक बछड़ा भी खड़ा दिखाई दे रहा है।

यहाँ की व्यवस्था का सामूहिक चित्रण बहुत ही सुंदर प्रतिलिपि के रूप में दिखाई दे रहा है क्योकि एक भैंस और उसके बछड़े का एक सामूहिक चित्रण है।

जो एक शैडो के नीचे खड़ा होकर अपना सामूहिक चित्रण ले रहा है तथा उसके पड़ोस में उसका साइड हेलमेट रखा हुआ है।

जो कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। एक साइड से जाने की व्यवस्था है। एक साइड से आने की व्यवस्था है।

यह एक शरमास नाम से कपड़ों की दुकान है। जिस पर कपड़ों का सभी कलेक्शन --

उनके साथ कुछ बच्चे भी हैं जो चर्च के बाहर पादरी के आने का वेट कर रहे हैं।

इसके रंग रूप से इसकी प्रक्रिया के बारे में समझने में कोशिश की जा रही है।